जैसे नशपाती बेल पपीता केला अंगूर काला अंगूर तरबूजा खरबूजा और भी बहोत सारे फल हैं।

यहां पे बहुत सारी वायर इधर उधर--

यहां एक बहोत लंबा इलेक्ट्रिक पोल भी लगाया गया है जिससे बहोत ही मोटी--

यहां पे काफी हरे भरे पेड़ पौधे लगाए गए हैं।

यह एक जंगलनुमा पार्क --

इनके टेबल पे एक इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है।

तालाब के आजू बाजू बहोत बड़े बड़े--

यहां कुछ जैन साधु संत हैं जो यहां पे--

यहां पे बहोत सारी दुकानें प्रतीत हो रही है जो का--

कपड़ों का शोरूम प्रतीत हो रहा है यहां पे गद्दे भी है जो काफी रंग बिरंगी है।

लग रहा है जो काफी अच्छा है यहां पे एक ग्रांटर भी रखा हुआ है सामने की तरफ में--

मिलर के पास दो पानी की बॉटल्स रखे हुए है।

यहां एक बाइक को भी पार्क किया गया है।

यह एक बोहोत ही सुंदर सोसायटी प्रतीत हो रही हैं।